इस फोटो में हमें दो व्यक्ति दिखाई दे रहे।

चादरी दिखाई दे रही है जो कि घर के ऊपर लगी हुई--

ब्राउन कलर की रेलिंग दिखाई दे रही है और ग्रीन कलर का पत्तियों वाला घास भी दिखाई दे रहा--

दिभी दिखाई दे रहा है जिसमें ब्लैक कलर से कुछ ज्वेलर्स लिखा हुआ है।

व्हाइट कलर का फर्श दिख रहा है और साथ में यहां में हमें बलफ व्हाइट कलर का दिख रहा --

कंबल दिखाई दे रहा है सामने ही यहां पर पर्दे रेड कलर के लगे हुए--

इस फोटो में हमें यहां पर सूरज--

हमें एक पंखा दिखाई दे रहा है सामने ही हमें दो लैंप दिखाई दे रहे--

व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो की वाइट कलर रेड कलर और येलो कलर की ड्रेस में है।

यहां पर पीछे फूलों के साथ डेकोरेशन किया गया है जोकि रेड व्हाइट पीले और कुछ फुल--

यहां पर हमें कुछ जंगल सा दिखाई दे रहा है जिसमें की बड़े बड़े ब्राउन कलर के पत्थर भी--

कुछ पेड़ हमें दिखाई दे रहे है जिसकी पत्तियां हमें ग्रीन कलर की यहां दिखाई दे रही है।

जो की यहाँ पर हमें रेड कलर के दिखाई दे रहें--

रेड नहीं तो यहां बस सिल्वर --

टोपी दिखाई दे रहा है सामने ही एक बॉक्स पड़ा है जो ग्रीन कलर का है सामने ब्लैक पानी है और उसके पीछे हमें ग्रीन पेड़ दिख रहे।

ब्लू कलर की यहां पर छत लगी हुई है।

इस फोटो में हमें यहां पर ग्रीन कलर का मैट दिख रहा है कुछ स्टील से बने हुए जिम के डंबल्स भी दिख रहे हैं।

और जिम के कुछ सामान रेड कलर का दिख रहा है सामने ही एक व्यक्ति की फोटो लगी हुई है और यहां पर हमें टाइल्स --

रेड कलर का समान दिख रहा है श यहां पर चार बलब लगे हुए दिखाई दे रहे जिसमें व्हाइट लाइट जल रही है और सामने ही--

इस फोटो में हमें एक व्यक्ती दिखाई दे रहा है जिसकी शर्ट का कलर हमें--